यह फोटो छठ पूजा का है इसमें काफी सारे लोग छठी माई को--

और दृश्य किसी मॉल का दिख रहा है।